और यहाँ पे सड़क पर लोग भी चलते हैं।

यह एक सच्ची मोहब्बत एक लंबी थी।

इसपे कापरे रखे हुए है नीचे भी हैं।

और यहाँ पे सीढियां चढ़ने के लिए लोग यहाँ से पैसे निकालते है और आते है।